और यहाँ से पाईप भी लगा हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा है।

ये एक चपाटर लगा हुआ है यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर एक अच्छा घर भी बना हुआ है जो कि बोहत अच्छा लग रहा है।